इसके सामने एक स्कूटी भी खड़ी--

इसमें आगे के साइड में दो लोग खाना पकाते हुए दिख रहे--

पूल पर से रिकॉर्ड किया गया है।

इसकी फैमिली उसे सेलिब्रेट करने के लिए डेकोरेशन करवा रखी है।

बड़े आकार के घंटे लटक रहे है।

यह तस्वीर हमे किसी पार्क की दिखाई देती है।

हम देख सकते हैं की इस में दो गेट लगे हुए हैं जिसमें एक गेट छोटा और एक बड़ा गेट लगा हुआ है।

स्कूटी है और एक रॉयल इनफील्ड बुलेट खड़ी है।

उसके बगल में एक बिल्डिंग भी बनी हुई है।

यह तस्वीर एक किसी कंप्यूटर सिस्टम जैसे कि एक क्लास रूम की जैसी दिख रही है।

दो विंडोज दिख रहा है।

और इसके वायर आगे उसमें कुछ सीलिंग लाइट्स भी दिख रही है।

इस चित्र को देख की यह लगता है कि यह एक स्टील से बने हुए धातुओं का--

जो कि स्टील से ही बना हुआ है यह एक कच्चा धातु है।

और लॉलीपॉप का बॉक्स भी रखा है जो कि बच्चों को बहोत आकर्षित करता है।

यहां रोड पर काफी सारी गाड़ियां हैं।

यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में बने हुए एक साईं बाबा के मंदिर की है।

यह तस्वीर हमें किसी कोविड सेंटर से ली गई हुई दिखाई दे रही है जैसे--

किट पहने हुए व्यक्ति एक लड़की के पर्स पर सैनिटाइजेशन कर रहा है।

जो कि शायद मॉल से लौट रही थी।

जा के हम देख सकते हैं पास में ही बेंचेज वगैरा पड़े हुए हैं।

साथ में ही बहुत ही साफ सफाई भी है।

यहां पर हमें रेड सांडों में जिम ट्रेनर दिखाई दे रहा है।

जहां पर हम देख सकते हैं कि एक बड़ी सी एल_सी_डी टी_वी लगी हुई है।

और यहां पर हम देख सकते हैं कि पी_एस फोर पी_एस थ्री और पी_एस फाइव गेम्स की शॉपिंग की जा सकती है।

इसमें तीन स्विफ्ट एक ही कलर की दिखाई दे रही है जो की लाल है।

दो व्यक्ति कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं।

जिसके पीछे बिल्डिंग बनी हुई है।

प्राइवेट हॉस्पिटल होने के साथ साथ यह लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी है।

नगर मेट्रो स्टेशन आलमबाग नहरिया लखनऊ में स्थापित है।

फोटो में दिखाया गया सीन किसी जिम का दिखाई दे रहा है।

और कोई भी व्यक्ति नहीं उपलब्ध है ना ही कोई ट्रेनर दिखाई दे रहा है।

ड्राइवर या फिर कंडक्टर की वर्दी का कोई व्यक्ति भी है जो की खाकी वर्दी पहन कर खड़ा हुआ है पीछे साइड में।

यह तस्वीर हमें एक कॉफी सेंटर की दिखाई दे रही है जो कि लखनऊ में स्थापित है।